और उनको रिपेयर किया जाता है वेदर वो जैसे कार दिख रही है।

इंसान कोशिश कर रहा है अंदर जाने की--

यहाँ पर कुछ अ इवेंट चल रहा है।

ये अह इलेक्ट्रॉनिक अह की चीजें हैं जैसे प्रेस हो गई।

यह पेट्रोलपंप दिख रहा है जहां पर--

हां जहां जो टी_वी के जो ब्रांड्स रहते हैं पैनासोनिक हो गई सोनी हो गई वीडियोकॉन हो गई।

और बहोत सारे अ ब्रैंड्स अ विजिबल है अवेलेबल है इस वाले--

अ कुछ बड़ी कुछ छोटी अ जैसे रिक्वायरमेंट होती हैं उस हिसाब से अ डिस्पले --

यहां पर कुछ अ ज्वेलरी टाइप दिख रहा है।

बैंक दिख रही है यहां पर आस पास काफी हरियाली हैं।

रेलवे ट्रैक लग रहा है जहां पर ट्रेंस आती है।

कुछ इसमें अ वेयरहाउस जैसे जो पार्सल्स है अ पारले जी ब्रांड के अ दिख रहे हैं।

ये बड़ा पार्क जैसा हैं जहाँ पर--

अह मौसम काफी बढ़िया लग रहा है।

अ ये एक किराने जैसा शॉप है।

ये काफी अह एक स्टोर रूम जैसा लग रहा है अह जहां काफी चेयर्स औ और टेबल रखी हुई है।

दिख रहा है जैसे जो आवाज है बहुत काफी लोगों तक पहुंचती है।

और ये एक प्रोजेक्ट डेमो डिस्प्ले है जहां पर ग्रीनरी बिल्डिंग अह की पार्किंग वगेरह--

यही कुछ स्टॉक मेंटेन किया गया हुआ है।

और स्टॉक को काफी अच्छे से सजाया गया है।